हेलो दोस्तों आप कैसे है यहाँ पर देख पा रहे है कि --

यह एक मछली बज़ार हैं यहाँ पर तरह-तरह के मछलियों को बेचा जाता हैं और कुछ आदमी मछली को कटाई और कुछ बिक्री कर रहा है।

हेलो गाइज़ आप देख पा रहे हैं के यहाँ पर कुछ खाने वाला सामान रखा गया हैं।